साइड में एक झोपड़ी पड़ी हुई है उसपे टिन का शैड भी लगा हुए है और एयरपोर्ट के साइड में एक पेड़ भी लगा हुआ है और काफी लोग--

और ये ब्लू कलर के चाट बिछाये हुए है। कुछ अदर्स कलर के बिछी हुई है और यहाँ पे नदी के किनारे--

और दो पतंगे यहाँ पे टकी हुई हैं और पीछे ऑरेंज कलर का --

यहाँ रोड पे कुछ लोगो एक थैला लिए जा रहें हैं। एक स्कूटर भी जा रहें है और रोड के इस --

ये एक लाइब्रेरी बनी हुई है जिस लाइब्रेरी मे शीशों के अंदर काफी --